कुछ पकड़ कर फोटो खिंचवा रहे हैं।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी दिख रही हैं साइड पर--

यहां पर ए_सी भी दिख रहा है।

दुकान के ऊपर लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।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

क्रॉकरी का और प्लास्टिक का और कांच का समान दिख रहा है यहां बहुत सारी प्लेटें दिख रही हैं।

और कांच की कटोरीयां भी सामने दिख रहीं हैं यहां पर ट्रे भी दिख रहीं हैं।

सामने एक झांकी निकल रही है।

इसमें काली माता की मूर्ति दिख रही है और यहां पर शे--

एक आदमी भी साइड पर बैठा हुआ है।

दीवार पर एक भगवान की फोटो भी दिख रही है।